ग्राउंड के ग्राउंड में खेत वगैरह है खेत के आसपास कुछ पेड़-पौधे वगैरा है।

पानी पीने का सामान रखा हुआ है अंदर कुर्सियां रखी है डेकोरेशन बहुत प्यारा लग रहा है मेरे को फूलों की सजावट है बाहर।

देखो गार्डन के गार्डन मैं बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

इसके बाद यहाँ पर बहोत सारे कपड़े रखे हैं काउंटर है और जिसने कपडा पहना है वो डमी हैं।

यह एक अलमीरा है यह है।

जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे एक कार खड़ी हुई है कार के मिरर में रिप्ले--

लाइटें जल रही हैं सीन पूरा शाम का है सामने पहाड़ मेरे को दिख रहा है उसके पास कुछ लाइट --

ऊपर जाने के लिए एक रास्ता है लोहे की--